यह जरुरत पूरा होती है और हम सभी के घर में ये सभी जो है --

कोई भी काम मे बड़ी-बड़ी मशीनों का लाभ लिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी काम खत्म किया जा सके।